तीन लड़के तीन लड़कियां और एक आदमी योगा कर रहा है।

सजाने की चीजे बना रहे हैं उसमें से एक लड़का नीचे बैठा है।

इस रूम को सजाया गया है एक ऊपर लाइट दिखाई दे रही है और चार बैलून दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे एक होटेल हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उसमें एक लड़का अपनी फोन से तस्वीर ले रहा हैं।

यहाँ पे एक स्टेज है और स्टेज को सजाया गया है उस स्टेज पे फ्लॉवर पॉट भी लगाया गया है।

यहां एक मैदान है मैदान में--

घास उठी हुई हैं और आस पास में बहोत सारे पेड़ भी है।

जिसने व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहना है और उधर पे एक चेर दिख रही है जोकि ब्लैक कलर की है।

ये एक ट्रक है बहोत बड़ी ट्रक है जिस के ऊपर क्रेन का हुक लगा हुआ है उसके--

उसके पीछे बहुत सारे पेड़ हैं जो कि हरे कलर के हैं।

पेड़ के साइड में थोड़ा सा पानी है और एक टावर भी है मोबाइल का टावर ।

ये एक बुक स्टॉल है जिसमें तीन लड़के हैं और एक महिला बैठी हुई है जो कि चाय पी रही है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पिंजरा हैं जिस पिंजरे में मुर्गियों को बंद किया गया हैं ।

और ऊपर जो बिल्डिंग का नाम है वो उसका नाम सूरज है।

और वो अपने हुक से एक पाइप को उठा रहे है।

ये एक चार्च है इस चार्च में एक औरत --